यहां पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जो कि व्हाइट कलर का है और मंदिर के सामने --

जो की शायद मिट्टी के बने होंगे ।

यह एक ग्राउंड हैं जो कि ग्राउंड के साइड में बहुत सारे घर है लंबे-लंबे और यहां पर पेड़ भी लगे हुए हैं घरों में।